उसके सामने एक टेबुल है जिसपे बिछाया हुआ है।

जहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और नीचे ग्रीनरी है और घास चढ़ा हुआ है वहां पे।

यहां पे बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वहां पे एवरग्रीन भी लगे हुए हैं।

ये भी एक फर्नीचर की एक शॉप है जहां पे बेड सोफे वगैरह बिकते है।

कहीं भी सड़क की फोटो है यहां पे ये जैसा चिनार ट्री लग रहा है या फूल फूल का पेड़ है जिस पे ऑरेंज कलर के फुल दिख रहे हैं।

ये एक नाई की शॉप लग रही है जहां पे मिरर वीरर लगा हुआ है।

मिरर सामने एक ब्लैक कलर की कुर्सी भी दिख रही है और मिरर के साइड में ड्रेसिंग टेबल लग रहा है।

अंदर एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है जिसको ये सेटिंग कर रहा है।

टेबल पे मेनू टिशु होल्डर कैचअप बोटल कैचअप बोतल दिखाई दे रही है।

और वहां दीवार का रेड कलर ब्लू कलर और ब्लैक कलर दिख रहा है।

यहां साइड में टेबल पे कुछ लड़कियां बैठी हुई है दो चार।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

ये एक हार्डवेयर शॉप लग रही है जहां पे ये बाथरूम की एसेसरीज है और पेंट वगैरह बेचते हैं।

ये भी एक शॉप है जहां पे खाने की बहोत सारी आइटम्स है।

वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जिसका फेस ब्लर आ रहा है।

और इसके आंगन में एक पार्क जैसी बनी हुई है जिसका शेप ट्रायंगल में बना हुआ है।

बहोत सारे सोफे है और उनको आगे से टेबल भी बनाया हुआ है।

वहां साइड पे भी एक सीनरी है जिस पे बुद्ध बना है।

और वहां पे कुछ बंदे हैं दो तीन बंदे दिख रहे हैं जिनका फेस ब्लर आ रहा है।

वहां से भी पिलर्स पे कुछ स्लैब जैसा खड़ा किया गया है।

ये खाली जगह दिख रही है जहां पर नीचे कुछ पत्थर ही पत्थर है और ऊपर ये दीवारे जैसी बनी हुई है।

और ये इर्द गिर्द पूरा खुला है इसमें कोई दीवार बंधी नहीं है कुछ नहीं है।

ये भी खुला एक मैदान जैसा है और भी दीवारों से बांधा हुआ है आगे एक गेट जैसा लगा हुआ है।

और इस ग्राउंड में भी इस मैदान में भी नीचे छेद जैसे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग खड़ा है जिन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म जैसी पहनी हुई है रेड कलर की।

और यहां साइड में दरवाजा खुला है जहां से लाइट अंदर आ रही है।

और वहाँ सामने कुर्सियां भी दिख रही हैं जो पैक हुई हैं।

और इसके आगे एक मकान दिख रहा है जिसपे व्हाइट और क्रीम कलर का किया हुआ है।

वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बाहर लाइटें लगी गई हैं पिंक कलर की--